ब ब्यूटीफुल बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ है कितना अच्छा लग रहा है लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादे दिख रहे हैं।

आ यार ये तो पक्का कंपनी है पता नहीं लेकिन है कोई कंपनी ।

समझ में हीं नहीं आ रहा है। अरे यार ये कोई एड्रेस बता देता तो भी हम लोग मंगा लेते आर्डर करके अरे यार बताओ न ये सब कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा --